यहां एक आदमी खड़ा है सफेद कलर की टी शर्ट पहनी हुई है हाथ में एक घड़ी बंधी हुई --

और लोहे की जाली लगी हुई है पीछे बहोत सारे ऊंट खड़े हैं ऊंटों के पीछे से फोटो ली गई--

ये नाव है दो आदमी खड़े हैं हाथ इधर किए हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं खंभे लगे हुए हैं बीच में पानी पड़ा है।

और भी तरह तरह के बच्चों के खेलने के लिए खिलौने हैं बीच में गमला है गमले के ऊपर फूल लगा हुआ है ऊपर एक गोल्डन कलर --